यह एक चित्र है और इस चित्र में एक दुकान है जिसमें बहोत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं जिसमें एक आंटी मछलियाँ बेच रही हैं।